एक डेकोरेशन की दुकाने दिखाई दे रही है उसके बहार पीले कलर का पेंट होता हुआ नजर आ रहा है।

संतरी कलर की पेंट होती हुई नजर आ रही है।

इस पिक्चर में हमें एक कंप्यूटर भी नजर आ रहा है।

और वेदर भी बहुत साफ है दिखाई दे रहा है।

और इस पिक्चर में बहुत ही सारे झंडे भी नजर आ रहे हैं जो की दिखने में अलग अलग कंट्री के लग रहे हैं।

पीछे पिक्चर में हमें बहुत सारे लोग नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं।

उसके बाहर दरवाजे पर शीशे की डोर लगे हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में हमें एक दुकान है नजर आ रही है।

इसमें एक नंबर प्लेट भी लगी हुई है।

इसे पिक्चर में हमें रात का व्यू भी नजर आ रहा है इसमें बहुते सारी लाइटिंग नजर आ रही है।

इस पिक्चर में हमें एक ट्रेनर अंदर आ रही है।

इस रूम में दो पिलो भी है।

और उन उस रूम का डोर भी वाइट है।

इसे पेट्रोल पंप में बहुत सारा पेट्रोल आता है।

और यहां पर एक फरश भी है जो हमें नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है।